हरा में भी है बहोत अच्छा है पिजड़ा में सब बंद है और ऊपर में भी है नीचे में भी है।

पीछे पूरा घास-घुस है और सामने में बाइक लगा हुआ है बहौत अच्छा बहौत बड़ा मैदान --

और बहौत अच्छा मैदान है और गाड़ी-गुड़ी एक लाइन से खड़ा है और साइड में बाइक भी खड़ा है।